और देखिए एक पेड़ है जो देखिए दो ऐ नीचे से वाइट कलर का पेंट किया हुआ। और देखिए पेड़ काफी बड़ा-बड़ा दिखाई दे रहा और हरियाली भी दिखाई दे रही है और देखिए एक चेयर भी दिखाई दे रही है।-

सियाराम शॉप है मल्टी फैशन जो देखिये श्री राम का नाम बहुत है ब्रांडेड कंपनी है इसकी शॉप है।